एक घर का फ्लोर पे मार्बल लगा के है।

और आगे में एक टीचर है और एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और आदमी का माथा में येलो कलर का टोपी पहन के है।

यहां में बहुत सारा टेबल दिखाई दे रहा है।

और ये दुकान का अंदर में बहोत सारा बैलून जे लगा के दिखाई दे रहा है।

वैसे की गमला बाल्टी और बहोत सारा सामान जो है कार्टून का अंदर में राख के दिखाई दे रहा--

एक गाड़ी और दो स्कूटी दिखाई दे रहा है।

और वहां में बहोत सारा आदमी जो खेल के दिखाई दे रहा है।

यहां में ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

और साइड साइड में भी टंगा के भी दिखई दे रहा है।